यहाँ एक बहुत गहरा समुद्र है नदी है ये बहुत गहरी यहाँ पे।

ओटासादा राजस्थान हेरिटिज नाम की एक जगह है यहाँ पे।

कुड़ती लगी हुई है दीवाल पर यहां पर सैनिटाइजर वगैरा भी रखा हुआ है यहां पे सब--

बॉडीगार्ड बहार खड़ा हुआ है एक भइया है जो की गेट ओपन कर के बहार जा रहे है दो--

ब्लू शर्ट पहनी लडकी ने भी सेम टाइप का एक लडके ने वाइट शर्ट पहनी है और यहा पे वो एक टेबल पर बेठे हुए है चेयर --

यह एक मंदिर दिख रहा है जो की काफी ज्यादा पुराने टाइम का है यहां की--

पथरो जो लगे है वो पुराने टाइप के प्थरोनो है रेलिंग वगेरा लगी हुई है यहा पे स्टील की ब्लैक --

काली माता की और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूर्तियां रखी हुई यहां पे छोटे छोटे फ्लावर्स पॉट भी रखे हुए--

बिल्कुल जैसे लाइट में रहती हैं ना बिल्कुल नॉरमल सी लाइट उस टाइप की लाइट लम्बा काफी टेबल रखा हुआ हैं चेयर लगी हुई हैं ब्लैक कलर की--

यहाँ रोड पे यहाँ एक रोड है यहाँ पे काफी ज्यादा--

यहाँ एक फ़ूड की शॉप हैं इसका नाम हैं हाई बी फ़ूड लोबी द गुरमीत स्टीव यहाँ पे--

यहाँ पे लाइट वगेरा हैं अंदर बहुत खुबसूरत एक वाचमैन खड़ा हुआ हैं एक बच्चा खड़ा हुआ हैं एक भैया हैं जो की अंदर जाने जिन्होंने पूरे पे --

यही परदे वगेरा भी लगे हुए है इस बस में हरयाली भी है यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए है नाईट का व्यू है।

वे काफी लंबी सी रेलिंग ऊपर तक लगी हुई है।

काफी ज्यादा यहाँ पे कार खड़ी हो सकती इतनी ज्यादा स्पेस है पार्किंग एरिया में बहुत खूबसूरत लग रहा है काफी साफ सफाई नीट एंड क्लीन है बिलकुल।

औरत आदमी बूढ़े भी हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे काफी ज्यादा फोग होरा हैं हरयाली दिख रही हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं धुआं धुआं हैं ।

यहाँ पे पेड़ पौधे है जो की काफी ज्यादा पेड़ पौधे है यहाँ पे।

रेस्टोरेंट है यहाँ पे काफी ज्यादा उनीक काफी ज्यादा खूबसूरत।

हां एक शॉप है यहां पे नल वगैरा मिलते हैं यहां पे--

यहा एक ईट की भट्टी लग रही हे जी --

काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे एक लड़की भी खड़ी हुई है बहुत खूबसूरत है ये।

यहां पे एक लड़का है जो की सेल्फी ले रहा है जिसे कान में--

खड़ी हुई है बहोत सारे मकान वगेरा दिख रहे है यह पे पेड़ पोधे भी है काफी बहोत खुबसुरत है ।